जैसे कि मैं देख सकता हूं कि और--

जैसे कि मैं देख सकता हूं कि मुझे एक पंखा दिखाई दे रहा है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे कुछ कार और ऑटो --

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे लाइट वगैरह नजर आ रही हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे एक तालाब नजर आ रहा है।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

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे और कुछ--

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे सीढ़ी नजर आ रही है और उसके ऊपर--

जैसे कि मुझे लग रहा है कि यह है एक मॉल की फोटो है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे एक फोटो स्टूडियो --

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे कुछ पेट्रोल टैंक पे बहुत भीड़ नज़र आ रही है और कुछ लोग गाड़ी लेकर भी खड़े हैं।

और उसके पीछे एक आदमी भी नजर आ रहा है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे एक आदमी नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे कुछ लड़कियां योगा आसन करते हुए दिख रही हैं।

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे एक गाय नजर आ रही है और यहां पर बहुत हरियाली है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं मुझे एक कार नजर आ रही है।

जैसे की मे देख सकता हूं मुझे कुछ लोग खिलते दिखाई दे रहे हैं।